और यहाँ बहुत ज्यादा साफ-सफाई है और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगते हैं ।

यह एक ट्रैक्टर डोजर है और ये नई-नई लगता है खरीदे हुए हैं और और बहुत अच्छे दिख रहे हैं ट्रैक्टर और इसको ले--

यहां पे लकड़ी की कुर्सी बनाई गई है और बहुत अच्छे कलर भी इसकी किए गए हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं।

और बहोत ही अच्छी बात है यहाँ पर गंदगी नहीं है साफ-सफाई रखते हैं और ये लोग बहोत अच्छे से काम निभाते हैं।

यह एक पपीते की गाछ है जो बहुत सारे पपीते फरे हुए हैं और एक फूल की गाछ है जो बहुत सारे फूल उगे हैं और एक --